यहाँ पर एक छोटा सा किराना का दुकान है ये दुकान बहुत ही छोटा है और इस दुकान पर बहुत छोटे छोटे --

यहां पर एक बंजर सी जमीन दिखाई दे रही है इस जमीन पर बहुत सारी ईटा पड़ी हुई है और कुछ लकड़ी भी पड़ी हुई है।

यहां पर बहुत सारे लोग आये हुए है ये कोचिंग क्लास लग रही है यहां पर बहुत बड़ी सामने एक --

यहाँ पर एक मारुती सुजुकी का शोरूम है | इस शोरूम पर नयी पुरानी दोनों प्रकर की गाड़ी मिल जाती है | इस श शोरूम के आगे रस्ते पर एक --

यहां पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है इस मेले पर बहुत सारे लोग आये हुए है यहां पर और इस मेले पर दो बड़े-बड़े झूले लगे हुए है इस झूले पर झूलने का अपना एक अलग ही मजा है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी फिश मार्केट है | इस मार्केट पर बहुत अ बड़े समुन्द्र से मछली पकड़ के लायी जाती है और यहाँ बेचने के लिए रखी जाती है | इधर बहुत सारे कस्टमर आये हुए हैं जो की मछली खरीदते हैं ।

और ले जाते है इधर एक अम्मा जी बैठी हुई है जो कि मछली बेचती हुई नजर आ रही है।

डांस करने से हमारा स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहता है।

राइट साइड पर इस स्कूल का ऑफिस है।

और इस पर गार्डन भी बनाया गया है।

प्लेट में और निचे ब्राउन कलर की टेबल ए लाजवाब पराठा लग रहा है अभी खाने का मन कर रहा है मेरा।

यहां पर एक कुमार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल करके बहुत बड़ा स्कूल है।

और इधर का गेट काफी बढ़िया तरीके से सजाया गया है फूलो से और --

तस्वीर टँगाई गई है एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट की राइट साइड में इस स्कूल की बिल्डिंग है ये बिल्डिंग ग्रे कलर में है।

यहाँ पर हरी कलर की घास जमी हुई है और कुछ छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी ऊगाए हुए है।

ये ए.टी.एम. एक घर के नीचे बनाया गया है।

यहाँ पर एक सिटी कैफ़े है इस सिटी कैफ़े का लोगो बहोत ही बढ़िया तरीके से लगया गया है इस दुकान के ऊपर।

नजर आ रहे हैं रोड के किनारे ही ये दुकान है काफी बढ़िया और प्रीमियम तरीके से दुकान बनाई गयी --